इसमें लकड़ी के काफी सारे बॉक्स बने हुए हैं।

यहां पर मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

एक पानी की बड़ी टंकी दिखाई दे रही है।

नीचे बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं।

के बाहर बहुत सारे बैलून दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ी और सुंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

उसमें काफी सारी नाव दिखाई दे रही है।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

कुछ चेयर दिखाई दे रही है टेबल दिखाई दे रहे हैं।

इसमे कुछ लाइटे लगी हुई हैं।

यहाँ पर लोगों की काफी सारी भीड़ दिखाई दे रही है।

उसके नीचे एक बिजली का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।

गाड़िया दिखाई दे रही हैं और रिक्शा दिखाई दे रही है।

पीछे कुछ फूलों के गुलदस्ते दिखाई दे रहे हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है इसमें काफी सारे पंखों के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं।

एक पानी का मग दिखाई दे रहा है।

नीचे एक मैट दिखाई दे रही है।